और यहाँ पे तार दिखाई दे रहा है ये रोड बड़ा दिखाई दे रहा है और देखने में बहोत सुंदर लग रहा है।

और यहाँ पुराना बिल्डिंग देख के अच्छा लगता हुआ दिखाई देता है और व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ आदमी दिखाई दे रहा है और बोहोत अच्छा है ।

यहां पे दिखाई देती हुई नजर आ रहा है और बोहुत बढ़िया लगता है देखने में ।

यहाँ पे भी बाल कटा रहा है इसका| बाल बहुत अच्छ से बनाया जा रहा है।

और ये चस्मा भी पहनी हुई है और देखने में बहुत सुंदर लगती है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगती है दिखाई दे रही है।

और कई चीज़ भी रखी हुई है देखने में बहुत सुंदर लगता है । देखने में अति सुंदर लग रहा है बोहोत मस्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है ।